यह किसी एक होटल का फ्रंट व्यू फुव्वारे के पीछे कुछ बहुत सारी तस्वीर भी हैं।

यहां पर एक पूल बनाया गया है उसके नीचे फावरा टाइप का बनाया गया है।

और यहां पर निशान कंपनी की बॉडी पार्ट जो भी डैमेज होता है वो सब मिलते हैं।

और यहां पर हर एक किस्म के कपल की एंट्री होती है।

और बड़े बुजुर्ग सब शाम की वक्त यहां पर घूमने आते--

बहुत ही अच्छी मौसम है पीछे की ओर और यहां पर एक पतला सा रास्ता बनाया गया है ऊपर की ओर जाने के लिए।

और उसके पीछे एक लक्स कोजी का शोरूम भी है यहां पर।

बहोत कम ही रेट पर सब चीज अवेलेबल है और आपको जब भी चाहे--

और यहां पर बच्चे प्रतिदिन खेलने कूदने आते हैं।

पीछे एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में देख सकते हैं पीछे से कुछ एक स्टीकर टाइप की लगाया हुआ है।

काले कलर की टोयोटा गाड़ी है और उसके पीछे बाइक लगाई हुई है।

एक अंकल आंटी और दो शादीशुदा जोड़ों के साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं और पूरा विधिवत कार्यक्रम करवाया जा रहा है।

के हर एक्साइज एवं गर्ल्स बॉयज सबके लिए अवेलेबल है।

आप देख सकते हैं पीछे हरा कलर का पेड़ पौधा लगा हुआ है।

पर बहुत सारा घर है और ये एक चौक है यहां पर जितना भी अगल बगल घर है रूम रेंट के लिए अवेलेबल रहता है।

फैमिली एंड सिंगल पर्सन के लिए भी अवेलेबल है।

उपर बोग कंपनी की ग्लासेस मिलती है।